यहाँ पर एक गणेश जी की बड़ी मूर्ति रखी हुई है और नीचे की तरफ माला चढ़ा हुआ है और मा मूर्ति के ऊपर माला चढ़ा हुआ है यहाँ पर कु --

यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसने पीछे की तरफ नीले रंग का एक बैग टांगा हुआ है और उसने हरे रंग की अ-अ नीले रंग की एक --

खड़े हुए है महिलाये है जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है और भी कुछ वाहन है जैसे कि बाइक है।

तर और इस ईमारत में ऊपर की तरफ का रंग गेरुवा है | नीचे गिर-ग-अ गुलाबी है हलका और नीचे की तरफ यहां गेट लगा हुआ है और खम्बे लगे --

के अंदर की तरफ खड़ी हुई है यहाँ पर लिखा हुआ है गो फर्स्ट चॉइस गोपाल सर्विसेज और बाहर की तरफ भी एक कार खड़ी हुई है।